पत्थर भी रखे हुए है काले रंग के और हरे हरे रंग के उसमे अ पौधे है आ काई सी ई दिखाई दे रही है और --

अ-अ-संतरा रंग का और नीले रंग का और पिंक रंग का इसके अंदर अ-ब-गमला रखा हुआ है और उसके अंदर हरे- हरे पत्तों की माला से इसको सजाया हुआ है और काफ़ी फूल और काफ़ी रंग बिरंगा है।

ये एक भगवान जी की मूर्ति है जोकि मेरे हिसाब से ये बालाजी भगवान है इनकी मूर्ति है।

ये एक गाड़ी है जो कि इनोवा गाड़ी है। इसका नंबर है युपीबी टू सेवन डबल फोर वन और सफ़ेद रंग की इनोवा गाड़ी है जो कि पहाड़ी इलाके में ग्राउंड के साइड में खड़ी हुई है।

इसका नाम है राज महेश जय माला स्टेज । इस फ़ोटो में एक राज महेश जय माला स्टेज है जो कि घूमती है मूविंग लिखा हुआ है और --

और उसके अंदर पीछे कई सारे लोग भी खड़े हुए हैं और उसके अंदर अल अलग-अलग रंग की लाइटे भी लगी हुई हैं और र अ नीले रंग की लाइटे लगी हुई --

ये नजारा है जहाँ अ ये प प पेड़ लगा हुआ है रास्ता जा रहा है और पहाड़ है पहाड़ी इ इलाका है। ये उसके बीच में से रास्ता निकलते हुए आ रहा है।